और नीचे की तरफ़ भी बहुत सा सामान रखा है एक रेड कलर की चेयर रखी हैं सामने की तरफ़ भी--

यलो और गोल्डन कलर की लाइट लगी है वहां पर कुछ पत्रिकाएं रखी हुईं हैं नीचे की तरफ भी बहोत सी फाइल्स रखी है एक फैन भी नीचे की तरफ रख--

यहां पर बहोत से पौधे लगे हैं क्यारियों में कुछ ब्राउन कलर की पत्तियों के हैं कुछ हरे कलर की और नीले कलर के।

और पिंक कलर के फ्लावर भी लगे हैं ऊपर की तरफ़ बहुत से गमले --

लटके हुए हैं जिसमें बेल और फ्लावर्स लगे हैं आस पास कुछ बड़े पौड़ पेड़--

पोधें भी लगे है सामने की तरफ़ यहाँ कुछ मशीन रखी है जहाँ एक व्यक्त्ति खड़े है एक लड़की भी जा रही है आस पास कुछ घासे--

यहाँ पर एक वाइट कालर का रूम है जो एक क्लासरूम है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई है और पढ़ाई कर रही है कुछ लिख --

पहले ही यहां पर ब्लैक कलर की चेयर रखी हुई है साइड में ब्राउन टेबल है।

और उसके ऊपर बैग रखें है सामने कम्प्यूटर सिस्टम प्रिंटर प्रोजेक्टर रखे हुए हैं।

टेबल पे बहोत सा समान है ऊपर व्हाइट लाइट लगी है पंखे लगे हुए हैं अंदर की तरफ कुछ व्यक्ति खड़े हैं वहां एक शटर भी लगा हुआ--

दिवार बनी है बाउंड्री वॉल के लिए और कुछ बड़े पेड़ भी लगे हैं घर भी यहां पर बने हुए हैं।

यहां पर पिंक और येलो अह व्हाइट कलर के बलून से काफी खूबसूरत--

वाइट लेस भी लगाई गई है वाइट पंखा लगा है ऊपर की तरफ़ छत पूरी वाइट है जिसमें वाइट लाइट लगी है।

सफेद और हरे कलर के फूलों से पूरे स्टेज को सजाया गया है व्हाइट झालर लगी है दो बड़ी यहां व्हाइट और गोल्डन कलर --

यहां पर एक शॉप है जो अन्दर से पूरी व्हाइट कलर की है जिस पर--

छोटे रिंग्स छोटे वाइट पाइप्स पाइप्स के टुकड़े ऊपर की तरफ़ जो ब्लू ग्रीन कलर के वा--

कुछ जगह खाली है जहाँ पर बहोत से हिरण चर रहे है आगे की तरफ कुछ बाउंड्री वाल है जाली है लोहे की --

ये जो बनी हुई हैं वहां भी अंदर भी पूरा जंगल हैं बहोत से पेड़ लगे हुए हैं बिल--

यहाँ पर बहुत सारे टेंट लगे है जिसमे वाइट रेड ऑरेंज और ब्राउन कलर के टेंट लगे हुए है और कुछ--

मिक्सर रखा है जिसमे जार लगा हुआ है एक भगवान की तस्वीर भी लगी है बीच में एक सील्ड रखी हुई है ।

साइड में काफ़ी सुंदर ब्राउन कलर का वॉलपेपर साइड की दीवार पर लगा हुआ है जहाँ एसी लगा है सामने की दिवार ब्लैक है वहां--

यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी है जो ब्राउन और वाइट कलर की है जिसमे जो बालकनी एरिया वो पूरा ब्लैक --

यहाँ पर एक शॉप है जो बिज़नस शॉप है जिसका उपर ब्लैक कलर का पोस्टर लगा हुआ है और साइड में दोनों तरफ़ भी पोस्टर लगे हुए है।

और फ्रंट पूरा मिरर का बना हुआ है और लकड़ी की चौकोर डिज़ाइन बनी हुई हैं सामने एक वाइ--

पोस्टर लगा है बहुत से म्यूजिक सिस्टम्स लगे है सामने लोहे का पूरा एंगल लगा हुआ है जिस पे बहुत सारे लाईट के सिस्टम्स रखे है ।

और केलों के पत्तों से भी सजाया गया है इसे उठाकर ले जाया जा रहा है और इसमें--

आस पास जो ग्राऊंड ख़ाली है वहा घास लगी है और चारो तरफ़ बडे-बडे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर लोगो की बहुत ज्यादा --

यहाँ पर एक बिल्डिंग है जो वाइट कलर की है जिस पे रेड और येलो कलर के पोस्टर लगे हुए है सामने की तरफ लोहे का एक --

हॉस्पिटल पूरा ही वाइट कलर का है पीछे की तरफ़ बहुत से वाइट पाइप्स लगे है जिनका कनेक्शन --

मशीनों से है और कैसे भी टू फिंगर्स शो कर रहे हैं आगे--

यहाँ पर एक शॉप है शॉप में बहुत सारा सामान भरा हुआ है ब्राउन कलर की अलमारी है जिसमें--

लटके हुए हैं बहुत सी मूर्तियां रखी हुए है और ऊपर की तरफ़ बहुत सारी बॉक्स रखे हुए है।

पेड़ भी लगे है और बहुत भीड़ हो रही है और यहां पर यह टोल नाका है।